इस पिक्चर में हमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे--

ऑटो और बाइक्स नजर आ रहे--

सभी के हाथ में हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें दो लोग भी दिखाई दे र--

दीवारों पर हमे पिज़्ज़ा की तस्वीर--

यहां पर हमें आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स नजर आ रहे हैं।

इन दोनों की शादी हो रही है।

यहां पर हमें नेट भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

बहुत सारी पेड़ नजर आ रही हैं यहां पर हमें--

इस पिक्चर में हमें हारमोनियम --